यहाँ कुछ कारीगर नीचे गेट बनाते हुए दिखाई दे रहै है गेट को साफ सुथरा करते हुए दिख रहै है जिसकी मरम्मत करते हुए रंग पेंट करते हुए नजर आ रहै है जो काफी सुंदर लग रहा है।

यहाँ पर काफी बड़े हरे-भरे फूल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे फल-फूल भी दिख रहे हैं यहाँ पे सब्जी का मार्केट भी नज़र आ रहा है जो काफी सुन्दर लग रहा है यहाँ पर काफी फूल-फल फूल दिख रहे हैं यहाँ पे नारंगी सेब आदि दिख रहे हैं लोग यहाँं पर लेने के लिए यहाँं लाइटो का भी उपयोग किया गया --